यहां पर कुछ फूल दिख रहे हैं जोकि रेड वाइट कलर के हैं और पीछे कुछ बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं कुछ गमले दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें ब्लैक कलर का रोड दिख रहा--

फूड भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है रेलिंग लगी हुई ब्लैक कलर की।

रात में ही पीछे ब्लू कलर का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

एक छोटा सा मकान बना हुआ है जिसके ऊपर दो शॉप्स बने हुए--

दिखाई दे रहे हैं सामने ही कुछ बसेस लगी हुई दिख रही है।

इस पिक्चर में हमें यहां पर एक कुर्सी दिखाई दे रही है जो की --

जिसके कान में येलो कलर का टैग लगा हुआ है।

इसमें छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई है।

साथ मे ही उडन का काम यहां पर खिड़कियो पर किया गया है।

वहां पर हल्का सा पिंक कलर का मकान बना हुआ है।

इस पिक्चर में हमें यहां पर एक मकान दिखाई दे रहा --